अह हरे हरे कपड़े और बोहत बड़े बड़े बॉक्स लगे हुए हैं। नदी के किनारे में एक हरा हरा वृक्ष दिखाई पड़ रहा--

और पहाड़ी पे बहुत से अह लड़के खड़े हैं जिसके कंधे में बैग लटका हुआ है।

एक सामने में ब ब्लैक कलर का सीढ़ी दिख दिख रहा है। उसके बगल में इस्टील का अ लगा हुआ है।

पीछे रसगुल्ला यहां मिलता है।

यह एक कोई मकान का फोटो है मकान में एक रूम दिखाई पड़ा रूम में मैकेनिक एक मशीन ले के ड्रिल कर रहा है उसमें तार लगे हुए हैं।

मकान में पलस्तर करके कुछ जैसा टाइल्स लगने के लिए दाग जुड़े हुए हैं और पलस्तर किया हुआ है।

यह एक बहोत बड़ा पार्क है पार्क में बहुत से बच्चे के खेलने के लिए बहुत से हैं अ बड़े बड़े खिलौने लगे हुए हैं।

और एक झूले भी लगे हुए है उसमें बहुत से बच्चे चढ़ रहे हैं।

के ड्रेस में कपड़े पहन के आ रहे हैं।

दुकान में गैस पे चाय बन रहा है और केतली भी रखा हुआ बहुत से।

टाइल्स लगे हुए एक जलना दिखाई पड़ रहा है जलने में एक सादा कलर का पर्दा भी है और लाइट भी जले हुए हैं।

इसमे लंबे लंबे कोन्टर बने हुए है। उस कोन्टर पे बहुत से देवी देवता के फोटो भी है।

बहुत बड़ा काउंटर लगा हुआ है उसमें बहुत कुर्सी लगे हुए हैं।

इटके कवर में प्लास्टिक लगा हुआ है टाइल्स लगे हुए हैं।

पीछे में एक टायर लगा हुआ है और सामने में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत हरे हरे वृक्ष हैं।

यह एक बहुत बड़ा जिम का फोटो है जिम में एक आदमी दिख रहा है।

दो मोर भी लगा हुआ है सूखा हुआ बगल में फुल पैंट का भी कपड़ा काउंटर में सजा हुआ है।

यह एक बहोत बड़ा तालाब है इसमें बहोत से गहराई है और बहोत अधिक पानी है।

छत पर दो आदमी कोने में दिखाई पड़ रहा है एक टी शर्ट पहन के दिखाई पड़ रहा है अगल -बगल बहुत ही मकान है और बहुत से रड निकले हुए हैं।

बिल्डिंग मैं एक बोर्ड लगा हुआ है। उसमें चेन्नई सिल्क लिखा हुआ है। उसके ऊपर में शीशा लगा हुआ है।

एक आदमी टैक्सी के बगल में झोला लेके जा रहा है एक सामने में बहुत बड़ा लाइट का पोल दिखाई पड़ रहा है उसमें बड़े बड़े भेपर लगे हुए हैं।